मिट मसाला है गरम मसाला है चाय पत्ती है।

होटल में भोजन कर रहे है और होटल --

बोहोत ही बड़ा है। इसमें बोहोत सारे लोग अ स्नान --

बैलून के ऊपर तैर रहे हैं ।

और यहाँ पे कुछ मजदुर माथा पे --

और यह मस्जिद व्हाइट कलर का है और इस मस्जिद --

यह एक सरकारी विद्यालय है।

इसका नाम उत्क्रमित मध्य विद्यालय इटाबाद है।

यह एक बुद्ध भगवान का मंदिर है जो की जमुई में स्तिथ है। इस मंदिर परिसर में एक आवश्यक सुचना दी गई है। मंदिर तथा प्रतिमा का फोटो खीचना सक्त मना है ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर सक्त कानूनी कारवाई की जाएगी।